अब अम फ्रिज है और लगा --

कोई कोई कार्यक्रम है डमरू बजा रहे है कोई खड़ा है कोई बैठा है कोई बजा रहा है।

ये सलवार फ्रॉक ये सब है।